यहाँ पे है जैसे पेट्रोल हो गया डीजल सब इसमें मिलता है।

दही मिलते है यहाँ पर --

जगह बढ़िया है साइड से बढ़िया सा --

और अच्छा सा वो इंग्लिश में है बढ़िया।

अ जगह कम हुआ है कुछ --

सजावट बढ़ियाँ है बॉक्स उधर रखा हुआ है कुर्सी टेबुल बढ़ियाँ है।

और रंगीन बादल हो रहा है।

एक बांध बना हुआ है।

खंभा है उसमे रे धागा लपटा हुआ है।

फिर एक शटल सी लगा हुआ है।

पानी है कचड़ा नहीं है इसमें।

और साइड साइड से हल्का-फुल्का लाइट फुट लगा हुआ है।